और कुछ लोग खेल देखने के लिए भी आते हैं इस स्टेडियम में रात के समय ये फोटो ली गयी है इस फोटो मे अंधेरा है।

सफेद आधी मूर्तियां छोटी हैं और आधी मूर्तियां बहोत ज्यादा बड़ी हैं।

ये तस्वीर एक बड़े से जिम सेंटर की है जहां पर बहोत सारी बड़ी-बड़ी --

यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति झूलो पर खेल रहे है | छोटे बच्चे भी इस पार्क में मौजूद हैं।

ये एक अस्पताल है। अस्पताल की बिल्डिंग का गेट भी है। इस अस्पताल की बिल्डिंग का कलर सफेद है।

मालाएं जमीन पे रखी हुई है। एक व्यक्ति इन मालाओ के ठेलों के पास खड़ा है। इस तस्वीर में एक टूल भी है जिसके पास दूसरा व्यक्ति खड़ा है।